और भईया देखिए भुल्लनपुर आ गया है। बहुत सारे डिजाइन हैं। खंभे है पेड़ पौधे हैं बादल दिख रहे हैं फाटक दिख रहे हैं।

पूरा सामने मकान बना हुआ है उस रेड कलर का लिखा हुआ है काला से पीला के डिजाइन में पेड़ है।